how to apply for a pan card के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
pan card के लिए आवेदन करना
आइडेंटिटी proof यानी पहचान के प्रमाण के लिए documents
application की स्थिति का पता लगाना
pan card application form को form 49a कहते हैं
यह form नीचे दिए गए link से downloaded किया जा सकता है
एक बार जब आपने यह form downloaded कर लिया है तो आप उसका print ले लें
आगे form को भरें
form को स्पष्टता से सिर्फ अंग्रेज़ी के block letters यानि बड़े अक्षरों में भरा जाना है
यह बेहतर होगा कि आप form भरने के लिए काली ink वाले pen का प्रयोग करें
प्रत्येक box में केवल एक ही character यानि अक्षर/number/पंगक्चूएशन साइन भरें
प्रत्येक शब्द के बाद एक box खाली छोड़ना ज़रूरी है
व्यक्तिगत आवेदकों को दो नए सफ़ेद background के साथ रंगीन फोटो की ज़रुरत होती है
form पर ये photos दिए गए स्थानों पर लगाये जाने हैं
photo का size 35cm x 25cm होना चाहिए
photos को स्टेपल या clipped से नहीं लगा होना चाहिए
बायीं तरफ वाले photo पर हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना चाहिए
दायीं तरफ वाले photo पर हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान उसके नीचे होना चाहिए
अंगूठे का निशान notary public या किसी भी मान्यताप्राप्त अधिकारी के द्वारा आधिकारिक seal और मुहर से प्रमाणित होना चाहिए
अब form भरना शुरू करते हैं
सबसे पहले assessing officer विवरण भरें
assessing officer विवरण इन वेबपेजेज़ से प्राप्त किया जा सकता है
item 1 section में आपको अपना निजी विवरण भरना है
यहाँ अपना टाइटल चुनें जैसे shri smt आदि
अपना सरनेम first नेम और middle नेम पूर्ण रूप से लिखें
ये इनिशियल्स के बिना भरे जाने हैं
आपके name के साथ कोई भी उपसर्ग जैसे m/s dr kumari आदि नहीं होने चाहिए
व्यक्ति न होने की स्थिति में क्या होता है अगर name दिए गए स्थान से बड़ा हो
उस स्थिति में यह first और लास्ट name के लिए दिए गए स्थान में लिखना जारी रखें
company की स्थिति में name लघुरूप में नहीं होना चाहिए
उदाहरण: private limited पूरा लिखना चाहिए
परिवर्तन जैसे pvt ltd private ltd p ltd आदि स्वीकार्य नहीं है
एकल स्वामित्व sole proprietorship की स्थति में मालिक के अपने name में pan कार्ड का आवेदन होना चाहिए
यह pan card पर printed किया जायेगा
ध्यान दें कि last नेम पूर्ण रूप में लिखना चाहिए
अगला section उन अन्य नामों के बारे में पूछता है जिनसे वह व्यक्ति जाना जाता है या जाना जाता था
यहाँ अगर आवेदक yes चुनता है तो यह भरना ज़रूरी है item 1 के निर्देशों का पालन करते हुए
item 4 gender field सिर्फ व्यक्तिगत आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए
item 5 section date of birth जन्म तारीख के लिए कहता है
अलगअलग वर्ग के आवेदकों से अपेक्षित तिथियाँ form में the गयी हैं
उदाहरण: company को dateofincorporation निगमीकरण की तिथि देनी चाहिए
आगे व्यक्तिगत आवेदक को अपने पिता का name भरना चाहिए
item 1 में name भरने के लिए दिए निर्देश यहाँ लागू होते हैं
ध्यान दें शादीशुदा महिला को भी अपने पिता का name भरना चाहिए न कि पति का name
item 7 पते के लिए पूछता है
घर का पता केवल व्यक्तियों huf aop boi या ajp द्वारा भरना चाहिए
व्यक्तियों को office का पता भी भरना चाहिए अगर वह आय का स्रोत रखते हों जैस बिज़्निस या profession
firm llp company local authority या trust की स्थिति में पूर्ण पता भरना ज़रूरी है
आवेदकों के द्वारा भरे गए the में निम्न सम्मिलित होना ज़रूरी है
नगर/शहर/जिला
प्रदेश/केंद्रशासितप्रदेश और
pincode
विदेश के पते foreign addresses में देश के name के साथ zip code होना ज़रूरी है
item 8 के लिए यानि communication के लिए पते में
व्यक्तियों/hufs/aop/boi/ajp घर के पते या office के पते पर tick करें
अन्य आवेदकों को उनका office का पता लिखना चाहिए
सारा पत्राचार यहाँ दिए पते पर भेजा जायेगा
item 9 में telephone number और email id विवरण भरा जाना है
telephone के विवरण में country code यानि isd code और area/std code सम्मिलित होने चाहिए
उदाहरण: delhi का telephone number 23557505 निम्न प्रकार भरा जाना चाहिए
9 1 जो country code है
* 1 1 जो std code है
numbers और mail आवश्यक हैं
application में कोई असहमति होने की स्थिति में आवेदकों से संपर्क करने के लिए
pan card को mail से भेजने के लिए
status अपडेट को मैसेज करने के लिए
item 10 में category status चुनें जो लागू होता है
liability partnership सीमित दायित्व साझेदारी की स्थिति में pan firm का status देगा
item 11 कम्पनियों के registrar के द्वारा इशू किये गए कम्पनियों के registration के लिए कहता है
अन्य आवेदक प्रदेश या केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा इशू किया गया registration number भर सकते हैं
item 12भारतीय नागरिकों को यदि aadhaar number आवंटित हुआ है तो भरना ज़रूरी है
यह aadhaar card की एक प्रति से समर्थित होना चाहिए
item 13 में आवेदकों को business या profession code प्रयोग करके अपनी आमदनी का साधन दिखाना ज़रूरी है
codes form के पेज 3 पर उपलब्ध हैं
उदाहरण: चिकित्सा profession और business का code 01 है
engineering का कोड 02
item 14 प्रतिनिधि निर्धारितियों representative assessees के निजी विवरणों के लिए पूछता है
सिर्फ वे जिनको आयकर अधनियम के section 160 में स्पष्ट किया गया है वो प्रतिनिधि निर्धारितियों representative assessees की तरह कार्य करते है
उनमे से कुछ हैं
अनिवासी का एक agent
एक अवयस्क पागल या मंद बुद्धि court of wards यानी अवयस्क वारिस आदि के अभिभावक या manager
प्रतिनिधि निर्धारितियाँ उनके लिए ज़रूरी हैं जो अवयस्क हैं मानसिक रूप से मंद हैं मृतक हैं मंद बुद्धि या पागल हैं
प्रतिनिधि निर्धारितियों का निजी विवरण यहाँ भरा जाना है
item 15 उन documents के बारे में है जिनको pan card application के लिए जमा किया जाना है
pan कार्ड application के साथ पते का proof और आइडेंटिटी proof लगाना ज़रूरी है
ये documents आवेदक के name में होने चाहिए
प्रतिनिधि निर्धारितियों को भी ये documents लगाने ज़रूरी हैं
pan application form के pan 4 पर documents की सूची दी गयी है जो पता और आइडेंटिटी का proof देते हैं
आवेदक को इस form में सूचीबद्ध किसी एक document को प्रस्तुत करना ज़रूरी है
उदाहरण व्यक्तिगत आवेदक और huf के लिए आइडेंटिटी proof निम्न हैं
school छोडने का प्रमाणपत्र
ration card
ड्राइविंग license आदि
पते के proof के लिए documents निम्न हैं
electricity bill telephone bill
passport आदि
अब हम application से सम्बंधित कुछ सामान्य जानकारी पर विचार करेंगे
pan application की प्रक्रिया के लिए fee 9600 रुपए यानि 8500 रुपए + 1236% service tax
भुगतान निम्न प्रकार से किया जा सकता है
भारत के बहार रहने वालों के लिए प्रक्रिया की fee 96200 रुपए है
यानि application fee 8500 रुपए + भेजने का शुल्क 77100 + 1236% service tax
विदेश के पते के लिए भुगतान सिर्फ demand draft से ही हो सकता है जो mumbai में देय हो
form के अंत वाला box आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के लिए है
अवयस्क मृतक पागल और मानसिक रूप से मंद के लिए प्रतिनिधित्व निर्धारिती के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिया जाना चाहिए
बिना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान वाली एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी जाएगी
आवेदकों को इस form की स्वीकृति पर acknowledgement यानी रसीद प्राप्त होगी
इस पर एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी
यह number application की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है
आप इसकी स्थिति का पता आयकर विभाग की website या इन website से भी लगा सकते हैं
इस website पर status track search इस कार्य को करेगा
इस सर्च को या तो आपके एक्नॉलिज्मेंट नंबर की या विवरण जैसे नाम और डेट ऑफ़ बर्थ की ज़रुरत होगी
आपको pan के status का विवरण sms के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है
smsnsdlpan space 15digit acknowledgement नंबर और इसे 57575 पर भेज दें
डाक के the निम्न की तरह दर्शाये गए है
आशा करती हूँ यह जानकारी उपयोगी थी
अब इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न सीखा
pan card के आवेदन के लिए प्रक्रिया
आइडेंटिटी proof के लिए documents और
pan कार्ड के status का पता लगाना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
अच्छी bandwidth न मिलने पार आप इसे download करके देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं